ये एक वुड का एरिया बना हुआ है जहाँ पर कुछ तस्वीरें बनी हुई हैंमुर्तियाँ बनी हुई है यहाँ पर एक घूमने का एरिया दिखाई दे रहा है जहाँ पर बहुत सारे लोग--

ये वेलवेट की जानमाज़ है डॉट्स बने हैं वाइट कलर के और बहुत बड़े-बड़े वो दिख रही हैं खिड़कियाँ--

कुछ लोग यहाँ जिनों पर बैठे हुए हैं एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है जो की सेल्फी ले रहे है और झरना बहोत ही प्यारा लग रहा है फुव्वारा सा बना रहा है बच्चे आए है बहोत सारे ये देखने के लिए।

ये कुछ नुकीले पत्थर भी दिखाई दे रहे है यहां पर और उधर की नीचे की ओर दिखाई दे रहा है रोशनी सी आ रही है और ये अंदर अंधेरा आर हो रहा है गुफा मे।

फैमिली सी दिखाई दे रही है तीन लोग दिखाई दे रहे है गर्ल्स एंड बॉयज और साथ में एक किड और बहोत सारे फोटो लगे है पोस्टर लगे हुए है यहाँ पर।

अंदर का एरिया ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा बस एक गेट दिखाई दे रहा है अंदर की ओर और इस पर लिखा हुआ है ये किस चीज का ऑफिस है इस पे लिखा है मेन्यूकिपल ऑफिस है और यहा पर डेट डली है।

बाइक सर्विसेज के दुकान दिखाई दे रहे है दिए जा रही है जो की एक कच्चे से उसमे बनी हुई छपरे दिखाई दे रही है नीचे शटर दिखाई दे रहा है एक घर में बनी हुई शॉप है पास में एक और शॉप दिखाई दे रही है जो--

ये बस स्टेंड का फोटो दिखाई दे रहा है जहां पे बहुत सारी बसे दिखाई दे रही हैं पानी भरा हुआ है यहां पर कुछ पीछे की ओर घर दिखाई दे रहे हैं बड़ी-सी बिल्डिंगें बनी हुई हैं जो की इनकॉम्पलिट बनी हैं।

मैदान सा दिखाई दे रहा उसके पास एक रोड दिखाई दे रहा हैं और कुछ पेड़ पौधे लगे हुए हैं यहाँ पर।